मुझे यहाँ पर हरी-हरी दुबा दिखाई दे रही है बिल्डिंग दिखाई दे रही है लोग दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पुल के ऊपर सड़क दिखाई दे रही है हरे पेड़ दिखाई दे रहे है पत्थर दिखाई दे रहे है सफ़ेद आकाश दिखाई दे रहा--

कुछ टमाटर पीले से रंग के हैं ऐसा-ऐसा लग रहा है कि ई टमाटर खराब होने को हैं टमाटर ज्यादा अच्छे नहीं हैं।

मुझे यहाँ पर विल्प का प्रकाश दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर गुब्बारे दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर पौधे दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर लड़कियाँ दिखाई दे रही--

बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है मुझे यहाँ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ हरे-हरे दुवा दिखाई दे रही है।

मुझे हरे-भरे पौधे दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पानी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ खम्भे दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ बड़े- बड़े पेड़ देखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर मोटर साइकिल दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर टंकियाँ दिखाई दे रही है।